और टमाटर के बगल में एक केस दिख रहा है जिसमे लम्बे-लम्बे गेपस बने है।

जिसपे कुछ एक छोटे-छोटे पौधे है और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे एक बड़ा- सा गेट बना हुआ है जिस पे थैंक यू लिखा हुआ हैं।